यहाँ पर एक फ्रिज में ट्रे में अलग-अलग मिठाई रखी हुई दिखाई दे रही है एक अंकल खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर फ्रिज रखी हुई दिखाई दे रहे हैं।

गेट लगा हुआ दिखाई दे रहा है जो फिलहाल अभी बंद दिखाई दे रहा--

यहाँ पर एक स्विंगपुल दिखाई दे रहा है स्विंगपुल में कुछ लड़के नहाते हुए दिखाई दे रहे हैं पीछे सिलिपस दिखाई दे रहे हैं कुछ पेड़ पीछे बने हुए दिखाई दे रहे है।

एक ट्रे में बहुत सारी जलेबी रखी हुई दिखाई दे रही है वैह एक करिहा के ऊपर रखी हुई दिखाई दे रही है पीछे कुछ काला- काला दिख नजर आ रहा हैं।

यहाँ पर एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग के बाहर कुछ लकड़ियाँ दिखाई दे रही है कुछ बाइक खड़ी दिखाई दे रही है एक पोस्टर लगा हुआ दिखाई--

निचे फर्स दिखाई दे रहा हैं।

यहाँ पर एक दुकान लगी हुई जिसमें सब्जी रखी हुई दिखाई दे रही बोरियो में सब्जी भरी हुई दिखाई दे रही है पनियों में संतरे रखे हुए दिखाई दे रहे हैं एक आदमी चलता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर --